हमें यहां पर नीला आसमान दिख रहा है पेड़ पोधे दिख रहे हैं हमें यहां पर कपड़े दिखाई दे रहे हैं हमें यहां पर स्कूटी दिखाई दे रही है बाइक दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है।

हमें यहाँ पे बहोत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वाइट कलर की ग्रीन कलर का पोस्टर दिख रहा है पाई-पाईप हमें दिख रहा है रोड दिख रहे है।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

मंदिर दिख रहे हैं लोग हमें दिख रहे हैं पहाड़ दिख रहे हैं हमें यहां पर मिटटी दिखाई दे रही है नीला सफेद आसमान दिख रहा है।

हमे यहां पर कार दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की है बस दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की है लाइटिंग के खम्बे दिखाई दे रहे है लाइटिंग के तार दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिख रहे है नीला नीला आसमान दिख रहा है।

हमें यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है और वाइट कलर का गेट दिख रहा है हमें यहां पर चेयर दिख रही है जो की ब्लू कलर की है।

हमें यहाँ पर बहुत सारे पोस्टरस दिख रहे हैं हमें यहाँ पर बहुत सारी चेअरस दिख रही है स्टील की डस्ट डस्टबिन देख रहे है बोटलस दिख रही है।

ब्लैक कलर का टावर्स दिख रहे है व्हाइट कलर रेड कलर के हमे यहां ब्लैक कलर की चेयर दिख रही है हमे साऊंड सिस्टम दिख रहा है व्हाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है।

हमें यहाँ पर दीवार दिख रही है हमें यहाँ पर पानी दिख रहा है हमें यहाँ पर शैडोज दिख रही है पेड़ पौधे दिख रहे है हमें यहाँ पर नीला आसमान दिख रहा है।

हमें यहाँ पर बहोत सारी सीढिया दिख रही है फ्लैग दिख रहा है रेड कलर का नीला नीला आसमान दिख रहा है लाइटिन के तार दिख रहे है।